और सामने में एक कोई कार्यालय दिख रहा है।

यहाँ पे हम सेंट्रल लाइ-लाइब्रेरी दिखाई दे रहा है। जोकि वहा लाइब्रेरी बोहोत बड़ा है। उसके सामने एक पोस्टर टंगा हुआ है।

पिंक पानी का पहाड़ पर यहाँ पे पानी पहाड़ पर से गिर रहा --